कुछ बिल्डिंग्स देखने को मिल रही है वाइट और ब्लू कलर की कुछ घास हमे देखने को मिल रही हैं इस पेड़ विडिओ में--

एक गेट लगा दिख रहा है ब्लैक कलर का काफी सारी विंडोअस हमे दिख रहे है यह कुछ स्टेर्स दिख रहे है पिंक कलर के खम्भे दिख रहे है।

और स्पार्कल पेनस बहुत कुछ दिख--

काफी ज्यादा हरियाली दिखने को मिल रही है पेड़-पौधे काफी सारे देखने को मिल रहे है बैकग्राउंड में हमें कुछ पहाड़ नजर आ रहे है और बहोत सुंदर व्यू आ रहा हैं इस सरका देखने में --

इसमें काफी सारे लाईट के खमबे लाइट के बायर हुमें देखने को मिल रहे हैं बैक्ग्राउण्ड में काफी बड़ा खेत देखने को मिल रहे हैं एक कुर्सी दिख रही है और काफी सरे पेड़-पौधे दिख रहे है |